और यहाँ गेस की टंकिये रखी हैं रेड रेड कलर की और एक रखा है एक तखत रखा है।

एक रोड दिखाई दे रहा है जहाँ से सामने से बस आ रही है साइड में ऑटो खड़ी --

क्या रे चार दुकाने बंद हैं और रेड-रेड कलर की बाइक खड़ी है एक और बहुत सरे बाइके खड़ी हैं ऑटो खड़े--

सर्दी का टाइम में सबने जैकेट वगेरा वगेरा पहेने हुए हैं और रेल की पटरी है एक रेल खड़ी हुई है।

ये एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है एण्ड रेल की पटरी हैं और एक ब्रिज बना हुआ है।